पार्क है जहाँ पर बहुत हरियाली नज़र आ रही है और बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं और एक गुलाबी खिलता हुआ फुल नजर आ रहा है।

जिस पे लिखा हुआ है नीले बोर्ड पे इमीग्रेशन और टूरिस्ट और दो पुरुष और ट्रॉलिये नजर आ रही हैं।

ये एक सफेद रंग का महादेव मंदिर है जिसके ऊपर भगवा रंग के झण्डे लगे हुए है और बहुत सारे औरते और पुरुष दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कोई अफ़सर आने वाला है ये सेमीनार हॉल है यहाँ पे पुरुष और औरते खड़ी हुई है लाल पीली और सफेद रंग की कुर्सियाँ रखी हुई है।